पुस्तको का रंग सफेद पीला लाल नीला काला है।

दरवाजे के बगल में कुछ पेड़ हैं जो की अधूरे दिखाई दे रहे हैं |

पेहली सीढी पर चार मुर्तिया रखी गई है ।

इस तस्वीर मे महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी गई है ।

जिनमें से एक लड़की वैसे ही बैठकर देख रही है।

घर के सिर्फ दरवाजों और दो खिड़कियों को दिखाया गया है।